बहोत ही अंधेरा दिख रहा है।

रेड कलर के दिख रहे है।

सिल्की होजरी और माचो हिन्ट लिखा हुआ दिख रहा है।

इस चित्र में हमें बहोत सारी साइकल --

साइकलें दिख रही है एक रेड कलर की साइकल दिख रही है।

रैक में बहोत सारे नए टायर रखे हुए--

रखा हुआ सामान भी दिख रहा है।

दो शॉप दिखाई दे रही है।

आसपास गमले भी दिखाई दे रहे है दीवार पर--